पहाड़ के सामने एक रास्ता दिख रही है रास्ता बहुत ढालू सी बनी हुई है।

झील के दोनों किनारों पे हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

तालाब के भीतर गट्टाकमल के पत्ते पड़े हुए हैं जो तैर रहे हैं। उसमें कुछ कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं।

जो लाइटे फ़ोकस दे रही हैं जो काफी अच्छी लग रही है यहां पे कोई फंक्शन हो रहा है।

जो पत्थर की दिखने में प्रतीत हो रही हैं सीढ़ी बहोत लंबी सी है।

सामने एक ज्वेलर्स की दुकान है जिसपे देवयश ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

सामने एक अशोक लीलैंड का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे अशोक लीलैंड लिखा हुआ है।

सामने एक गेट और दिखाई दे रहा है जो उसके ऊपर वेलकम लिखा है उस गेट के पीछे साइड में एक छोटा सा पेड़ है।

सामने एक फोटो लगी हुई है जो श्री कृष्णा भगवान जी की है।

उस कत मीनार के पास में वृक्ष हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक गैरेज दिखाई दे रहा है जो भूतेश्वर गैरेज के नाम से है।

पार्क में हरि घास दिखाई दे रही है जो फिल्ड में है।

एक बाइक से जा रहा है जो हेलमेट लगाए हुए है पीछे एक लेडिज बैठी हुई है।

एक पीछे दुकान भी दिखाई दे रही है जो पीले रंग के शटर का है।